और ये सबसे अच्छा सुंदर लगता है देखने से हम लगता है की यह पुरातन का कितना कोशिश है उस समय --

देख सखते हैं कि होरेब चर्च प्रार्थना मंदिर हैं यहा प्रार्थना करने के लिए अच्छा मंदिर हैं क्यूंकी यहा चर्च पे ख्रिसमस लोग ने आके यहा चर्च करते हैं मेनि ख्रिश्चन्स ने यहा चर्च करने के लिए एक प्रार्थना मंदिर हैं।